यह किसी नदी का दृश्य है।

ये खेल का मैदान समतल और साथ में हरा बड़ा है।

यहां हरियाली से भरा मैदान भी देखा जा सकता है यहां बीच में तार के कुछ बिजली के खंभे भी देखे जा सकता है।

नाजों को एक प्लास्टिक के ऊपर रखा गया है।

यहा एक कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीर है जहां हम छत पे घर बनाते हुए देखे जा सकते हैं।

अंदर हम कुछ कुर्सियां और टेबल भी रखे हुए देख ही सकते हैं।

यह देखने से कोई मंदिल के बाहर का दृश्य लग रहा है जहां नीला आसमान भी देखा जा सकता है।

यह किसी नदी का दृश्य है यहां पे कुछ लोग भी देखे जा सकते हैं।